मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज प्रारम्भ में ही मन की बात एक फ़ोनकॉल से ही शुरू करते हैं
फ़ोन
आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं कोमल त्रिपाठी मेरठ से बोल रही हूँ 28 तारीख को नेशनल साइंस डे है इंडिया की प्रोग्रेस और उसका ग्राउथ साइंस से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है जितना ही हम इसमें रिसर्च और इनोवेशन करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे और प्रॉस्पर करेंगे क्या आप हमारे युवाओं को मोटीवेट करने के लिए कुछ ऐसे शब्द कह सकते हैं जिससे कि वो साइंटिफिक तरीक़े से अपनी सोच को आगे बढाएं और हमारे देश को भी आगे बढ़ा सकें धन्यवाद
आपके फ़ोनकॉल के लिए बहुतबहुत धन्यवाद
विज्ञान को लेकर ढ़ेर सारे प्रश्न मेरे युवा साथियों ने मुझसे पूछे हैं कुछनकुछ लिखते रहते हैं
हमने देखा है कि समुन्दर का रंग नीला नज़र आता है लेकिन हम अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जानते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता है
क्या कभी हमने सोचा है कि नदी हो समुन्दर हो पानी रंगीन क्यों हो जाता है यही प्रश्न 1920 के दशक में एक युवक के मन में आया था
इसी प्रश्न ने आधुनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक को जन्म दिया
जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले भारतरत्न सर सीवी रमन का नाम हमारे सामने आता है
उन्हें लाइट स्कैटरिंग यानि प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबलपुरस्कार प्रदान किया गया था
उनकी एक ख़ोज रमन इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है
हम हर वर्ष 28 फ़रवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन उन्होंने लाइट स्कैटरिंग की घटना की ख़ोज की थी
जिसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया
इस देश ने विज्ञान के क्षेत्र में कई महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया है
एक तरफ़ महान गणितज्ञ बोधायन भास्कर ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट की परंपरा रही है तो दूसरी तरफ़ चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक हमारा गौरव हैं
सर जगदीश चन्द्र बोस और हरगोविंद खुराना से लेकर सत्येन्द्र नाथ बोस जैसे वैज्ञानिकये भारत के गौरव हैं
सत्येन्द्र नाथ बोस के नाम पर तो फेमस पार्टिकल बोसों का नामकरण भी किया गया
हाल ही मुझे मुम्बई में एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला वाधवानी इंस्टीट्यूट फोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उद्घाटन का
विज्ञान के क्षेत्र में जो चमत्कार हो रहे हैं उनके बारे में जानना बड़ा दिलचस्प था
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रोबोट्स बॉट्स और स्पेसिफिक टास्क करने वाली मशीनें बनाने में सहायता मिलती है
आजकल मशीनें सेल्फ लर्निंग से अपने आप के इंटेलिजेंस को और स्मार्ट बनाती जाती हैं
इस टेक्नोलॉजी का उपयोग ग़रीबों वंचितों या ज़रुरतमंदों का जीवन बेहतर करने के काम आ सकता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस कार्यक्रम में मैंने वैज्ञानिक समुदाय से आग्रह किया कि दिव्यांग भाइयों और बहनों का जीवन सुगम बनाने के लिए किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद मिल सकती है क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बेहतर अनुमान लगा सकते हैं किसानों को फ़सलों की पैदावार को लेकर कोई सहायता कर सकते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को आसान बनाने और आधुनिक तरीक़े से बीमारियों के इलाज़ में सहायक हो सकता है
पिछले दिनों इज़राइल के प्रधानमंत्री के साथ मुझे गुजरात में अहमदाबाद में आई क्रिएट के उद्घाटन के लिए जाने का अवसर मिला था
वहाँ एक नौजवान ने एक ऐसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया हुआ बताया उसने कि जिसमें अगर कोई बोल नहीं सकता है तो उस instrumentके माध्यम से अपनी बात लिखते ही वो वॉइस में कन्वर्ट होती है और आप वैसे ही सम्वाद कर सकते हैं जैसे कि एक बोल सकने वाले व्यक्ति के साथ आप करते हैं
मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ऐसी कई विधाओं में हम कर सकते हैं
साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैल्यू न्यूट्रल होती हैं
इनमें मूल्य अपने आप नहीं होते हैं
कोई भी मशीन वैसा ही कार्य करेगी जैसा हम चाहेंगे
लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मशीन से क्या काम लेना चाहते हैं
यहाँ पर मानवीयउद्धेश्य महत्वपूर्ण हो जाता है
विज्ञान का मानवमात्र कल्याण के लिए उपयोग मानव जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयोग
लाइट बल्ब का आविष्कार करने वाले थोमस अल्वा एडिसन अपने प्रयोगों में कई बार असफ़ल रहे
एक बार उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया मैंने लाइट बल्ब नहीं बनाने के दस हज़ार तरीक़े खोज़े हैं यानि एडिसन ने अपनी असफलताओं को भी अपनी शक्ति बना लिया
संयोग से सौभाग्य है कि आज मैं महर्षि अरबिन्दो की कर्मभूमि ऑरोविले में हूँ
एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी उनके शासन पर सवाल उठाए
इसी प्रकार उन्होंने एक महान ऋषि के रूप में जीवन के हर पहलू के सामने सवाल रखा
उत्तर खोज़ निकाला और मानवता को राह दिखाई
सच्चाई को जानने के लिए बारबार प्रश्न पूछने की भावना महत्वपूर्ण है
वैज्ञानिक ख़ोज के पीछे की असल प्रेरणा भी तो यही है
तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिये जब तक क्यों क्या और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर न मिल पाए
नेशनल साइंस डे के अवसर पर हमारे वैज्ञानिकों विज्ञान से जुड़े सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ
हमारी युवापीढ़ी सत्य और ज्ञान की खोज़ के लिए प्रेरित हो विज्ञान की मदद से समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित हो इसके लिए मेरी बहुतबहुत शुभकामनाएँ हैं
साथियो क्राइसिस के समय सेफटी डिसास्टर इन सारे विषयों पर मुझे बहुत बार बहुत कुछ सन्देश आते रहते हैं लोग मुझे कुछनकुछ लिखते रहते हैं
पुणे से श्रीमान रवीन्द्र सिंह ने नरेंद्रमोदी मोबाइल App पर अपने कमेंट में आक्यूपेशनल सेफटी पर बात की है
उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में फैक्टरीज और कंस्ट्रक्शंस साइट्स पर सेफटी स्टैंडर्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं
अगले 4 मार्च को भारत का नेशनल सेफटी डे है तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में सेफटी पर बात करें ताकि लोगों में सेफटी को लेकर जागरूकता बढ़े
जब हम पब्लिक सेफटी की बात करते हैं तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं प्रोएक्टिवनेस और दूसरा है preparedness
सेफटी दो प्रकार की होती है एक वो जो आपदा के समय जरुरी होती है सेफटी ड्यूरिंग डिसास्टर्स और दूसरी वो जिसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है सेफटी इन एवरीडे लाइफ
अगर हम दैनिक जीवन में सेफटी को लेकर जागरूक नहीं हैं उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपदा के दौरान इसे पाना मुश्किल हो जाता है
हम सब बहुत बार रास्तों पर लिखे हुए बोर्ड पढ़ते हैं
उसमें लिखा होता है
दुर्घटना घटी
एक भूल करे नुकसान छीने खुशियाँ और मुस्कान
इतनी जल्दी न दुनिया छोड़ो सुरक्षा से अब नाता जोड़ो
सुरक्षा से न करो कोई मस्ती वर्ना ज़िंदगी होगी सस्ती
उससे आगे उन वाक्य का हमारे जीवन में कभीकभी कोई उपयोग ही नहीं होता है
प्राकृतिक आपदाओं को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर दुर्घटनाएँ हमारी कोईनकोई गलती का परिणाम होती हैं
अगर हम सतर्क रहें आवश्यक नियमों का पालन करें तो हम अपने जीवन की रक्षा तो कर ही सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटनाओं से भी हम समाज को बचा सकते हैं
कभीकभी हमने देखा है कि वर्क प्लेस पर सेफटी को लेकर बहुत सूत्र लिखे गए होते हैं लेकिन जब देखते हैं तो कहीं पर उसका पालन नज़र नहीं आता है
मेरा तो आग्रह है कि महानगर पालिका नगर पालिकाएँ जिनके पास फायर ब्रिगेड होते हैं उन्हें हफ़्ते में एक बार या महीने में एक बार अलगअलग स्कूलों में जा करके स्कूल के बच्चों के सामने मॉक ड्रिल करना चाहिये
उससे दो फायदे होंगे फायर ब्रिगेड को भी सतर्क रहने की आदत रहती है और नयी पीढ़ी को इसकी शिक्षा भी मिलती है और इसके लिए न कोई अलग खर्चा होता है एक प्रकार से शिक्षा का ही एक क्रम बन जाता है और मैं हमेशा इस बात का आग्रह करता रहता हूँ
जहाँ तक आपदाओं की बात है डिसास्टर्स की बात है तो भारत भौगोलिक और जलवायु की दृष्टि से विविधताओं से भरा हुआ देश है
इस देश ने कई प्राक्रतिक और मानवनिर्मित आपदाएँ जैसे रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं को झेला है
आज नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए देश में आपदाप्रबंधन की अगुवाई कर रहा है
भूकंप हो बाढ़ हो साइक्लोन हो भूस्खलन हो जैसे विभिन्न आपदाओं को रेस्क्यू आपरेशन हो एनडीएमए तुरंत पहुँचता है
उन्होंने गाइडलाइन्स भी जारी किये हैं साथसाथ वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए लगातार ट्रेनिंग के काम भी करते रहते हैं
बाढ़ साइक्लोन के खतरे में होने वाले ज़िलों में वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण के लिए भी आपदा मित्र नाम की पहल की गई है
प्रशिक्षण और जागरूकता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है
आज से दोतीन साल पहले लू हीट वेव से प्रतिवर्ष हजारों लोग अपनी जान गवाँ देते थे
इसके बाद एनडीएमए ने हीट वेव के प्रबंधन के लिए वर्कशॉप आयोजित किये लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया
मौसम विभाग ने सटीक पूर्वानुमान लगाये
सबकी भागीदारी से एक अच्छा परिणाम सामने आया
2017 में लू से होने वाली मौतों की संख्या अप्रत्याशित रूप से घटकर क़रीबक़रीब 220 पर आ गई
इससे पता चलता है कि अगर हम सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं
समाज में इस प्रकार से काम करने वाले अनगिनत लोग हों सामाजिक संगठन हों जागरूक नागरिक हों मैं उन सब की सराहना करना चाहता हूँ जो कहीं पर भी आपदा हो मिनटों के अन्दर राहत और बचाव कार्य में जुट जाते हैं
और ऐसे गुमनाम हीरोज की संख्या कोई कम नहीं है
हमारी फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्सेस सशस्त्र सेनाएँ पैरामिलिटरी फोर्सेस ये भी संकट के समय पहुँचने वाले वीर बहादुर अपनी जान की परवाह किये बिना लोगों की मदद करते हैं
एनसीसी स्काउट्स जैसे संगठन भी इन कामों को आजकल कर भी रहे हैं ट्रेनिंग भी कर रहे हैं
पिछले दिनों हमने एक प्रयास ये भी शुरू किया है कि जैसे दुनिया के देशों में जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज होती है तो क्यों न दुनिया के देश डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए भी जॉइंट एक्सरसाइज करें
भारत ने इसको लीड किया है बिमस्टेक बांग्लादेश भारत म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड भूटान और नेपाल इन देशों की एक जॉइंट डिसास्टर्स मैनेजमेंट एक्सरसाइज भी की गई ये अपने आप में एक पहला और बड़ा मानवीय प्रयोग था
हमें एक रिस्क कॉन्शियस सोसाइटी बनना होगा
अपनी संस्कृति में हम मूल्यों की रक्षा सेफटी ओएफ वैल्यूज के बारे में तो अक्सर बातें करते हैं लेकिन हमें वैल्यूज ओएफ सेफटी सुरक्षा के मूल्यों को भी समझना होगा
हमें उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा
हमारे सामान्य जीवन में हमने देखा है कि हम सैकड़ों बार हवाई जहाज में यात्रा करते हैं और हवाई जहाज के अंदर एयर होस्टेस प्रारंभ में सेफटी के संबंध में सूचनाएँ देती है
हम सब ने सौबार इसको सुना होगा लेकिन आज हमें कोई हवाई जहाज में ले जा करके खड़ा करे और पूछे कि बताइये कौन सी चीज़ कहाँ है लाइफ जैकेट कहाँ है कैसे उपयोग करना चाहिए मैं दावे से कहता हूँ हममें से कोई नहीं बता पायेगा
मतलब ये हुआ कि क्या जानकारी देने की व्यवस्था थी थी
प्रत्यक्ष उस तरफ़ नज़र करके देखने के लिए सम्भावना थी थी
लेकिन हमने किया नहीं
क्यों क्योंकि हम स्वभाव से कॉन्शियस नहीं हैं और इसलिए हमारे कान हवाई जहाज बैठने के बाद सुनते तो हैं लेकिन ये सूचना मेरे लिए है ऐसा हममें से किसी को लगता ही नहीं है
वैसा ही जीवन के हर क्षेत्र में हमारा अनुभव है
हम ये न सोचें कि सेफटी किसी और के लिए है अगर हम सब अपनी सेफटी के लिए सजग हो जाएँ तो समाज की सेफटी का भाव भी अन्तर्निहित होता है
मेरे प्यारे देशवासियो इस बार बजट में स्वच्छ भारत के तहत गाँवों के लिए बायोगैस के माध्यम से वास्ते टो वेल्थ और वास्ते टो एनर्जी बनाने पर ज़ोर दिया गया
इसके लिए पहल शुरू की गई और इसे नाम दिया गया गोबर्धन गैल्वेनाइजिंग आर्गेनिक बायोआग्रो Resources
इस गोबर्धन योजना का उद्देश्य है गाँवों को स्वच्छ बनाना और पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगास में परिवर्तित कर उससे धन और ऊर्जा जनरेट करना
भारत में मवेशियों की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है
भारत में मवेशियों की आबादी लगभग 30 करोड़ है और गोबर का उत्पादन प्रतिदिन लगभग 30 लाख टन है
कुछ यूरोपीय देश और चीन पशुओं के गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं लेकिन भारत में इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत अब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं
मवेशियों के गोबर कृषि से निकलने वाले कचरे रसोई घर से निकलने वाला कचरा इन सबको बायोगैस आधारित उर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
गोबर धन योजना के तहत ग्रामीण भारत में किसानों बहनों भाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो गोबर और कचरे को सिर्फ वास्ते के रूप में नहीं बल्कि आय के स्रोत के रूप में देखें
गोबर धन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को कई लाभ मिलेंगे
गांव को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी
पशुआरोग्य बेहतर होगा और उत्पादकता बढ़ेगी
बायोगैस से खाना पकाने और लाइटिंग के लिए ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी
किसानों एवं पशुपालकों को आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी
वास्ते कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन बायोगैस की बिक्री आदि के लिए नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे
गोबर धन योजना के सुचारू व्यवस्था के लिए एक ओनलाइन ट्रेडिंग प्लैटफार्म भी बनाया जाएगा जो किसानों को खरीदारों से कनेक्ट करेगा ताकि किसानों को गोबर और एग्रीकल्चर वास्ते का सही दाम मिल सके
मैं उद्यमियों विशेष रूप से ग्रामीण भारत में रह रही अपनी बहनों से आग्रह करता हूँ कि आप आगे आयें
सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर सहकारी समितियां बनाकर इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं
मैं आपको आमंत्रित करता हूँ क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन जॉब्स के इस आन्दोलन के भागीदार बनें
अपने गाँव में वास्ते को वेल्थ में परिवर्तन करने और गोबर से गोबरधन बनाने की दिशा में पहल करें
मेरे प्यारे देशवासियो आज तक हम म्यूजिक फेस्टिवल फूड फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल न जाने कितनेकितने प्रकार के फेस्टिवल के बारे में सुनते आए हैं
लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अनूठा प्रयास करते हुए राज्य का पहला कचरा महोत्सव आयोजित किया गया
रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित इस महोत्सव के पीछे जो उद्देश्य था वह था स्वच्छता को लेकर जागरूकता
शहर के वास्ते का क्रिएटिवली उसे करना और गार्बेज को रियूज करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना
इस महोत्सव के दौरान तरहतरह की एक्टिविटी हुई जिसमें छात्रों से लेकर बड़ों तक हर कोई शामिल हुआ
कचरे का उपयोग करके अलगअलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई गईं
वास्ते मैनेजमेंट के सभी पहलूओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए वर्कशॉप आयोजित किये गए
स्वच्छता के थीम पर म्यूजिक परफॉर्मेंस हुई
आर्ट वर्क बनाए गए
रायपुर से प्रेरित होकर अन्य ज़िलों में भी अलगअलग तरह के कचरा उत्सव हुए
हर किसी ने अपनीअपनी तरफ से पहल करते हुए स्वच्छता को लेकर इनोवेटिव आईडीईएएस शेयर किये चर्चाएं की कविता पाठ हुए
स्वच्छता को लेकर एक उत्सवसा माहौल तैयार हो गया
खासकर स्कूली बच्चों ने जिस तरह बढ़चढ़ करके भाग लिया वह अद्भुत था
वास्ते मैनेजमेंट और स्वच्छता के महत्व को जिस अभिनव तरीक़े से इस महोत्सव में प्रदर्शित किया गया इसके लिए रायपुर नगर निगम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और वहां की सरकार और प्रशासन को मैं ढ़ेरों बधाइयाँ देता हूँ
हर वर्ष 8 मार्च को अन्तरराष्ट्रीय महिलादिवस मनाया जाता है
देश और दुनिया में कई सारे कार्यक्रम होते हैं
इस दिन देश में नारी शक्ति पुरस्कार से ऐसी महिलाओं को सत्कार भी किया जाता है जिन्होंने बीते दिनों में भिन्नभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया हो
आज देश वूमेन डेवलपमेंट से आगे वुमेनल्ड डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है
आज हम महिला विकास से आगे महिला के नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं
इस अवसर पर मुझे स्वामी विवेकानंद के वचन याद आते हैं
उन्होंने कहा था थे आईडीईए ओएफ परफेक्ट वुमनहुड इस परफेक्ट इंडिपेंडेंस सवासौ वर्ष पहले स्वामी जी का यह विचार भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति के चिंतन को व्यक्त करता है
आज सामाजिक आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करना यह हम सबका कर्तव्य है यह हम सबकी जिम्मेवारी है
हम उस परंपरा का हिस्सा है जहाँ पुरुषों की पहचान नारियों से होती थी
यशोदानंदन कौशल्यानंदन गांधारीपुत्र यही पहचान होती थी किसी बेटे की
आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों से आत्मबल और आत्मविश्वास का परिचय दिया है
स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है
उन्होंने ख़ुद को तो आगे बढाया ही है साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने और एक नए मुक़ाम पर ले जाने का काम किया है
आख़िर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है जहाँ नारी सशक्त हो सबल हो देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो
पिछले दिनों मुझे एक बहुत ही बढ़िया सुझाव किसी महाशय ने दिया था
उन्होंने सुझाव दिया था कि 8 मार्च महिला दिवस मनाने के भाँति भाँति के कार्यक्रम होते हैं
क्या हर गाँवशहर में जिन्होंने 100 वर्ष पूर्ण किये हैं ऐसी माताओंबहनों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है क्या और उसमें एक लम्बे जीवन की बातें की जा सकती हैं क्या मुझे विचार अच्छा लगा आप तक पहुँचा रहा हूँ
नारी शक्ति क्या कर सकती है आपको ढ़ेर सारे उदाहरण मिलेंगे
अगर आप अगलबगल में झाकेंगे तो कुछनकुछ ऐसी कहानियाँ आपके जीवन को प्रेरणा देंगी
अभीअभी झारखण्ड से मुझे एक समाचार मिला
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत झारखण्ड में लगभग 15 लाख महिलाओं ने यह आँकड़ा छोटा नहीं है
15 लाख महिलाओं ने संगठित होकर एक माह का स्वच्छता अभियान चलाया
26 जनवरी 2018 से प्रारंभ हुए इस अभियान के अंतर्गत मात्र 20 दिन में इन महिलाओं ने 1 लाख 70 हजार शौचालयों का निर्माण कर एक नई मिसाल कायम की है
इसमें करीब 1 लाख सखी मंडल सम्मिलित हैं
14 लाख महिलाएँ 2 हजार महिला पंचायत प्रतिनिधि 29 हजार जलसहिया 10 हज़ार महिला स्वच्छाग्रही तथा 50 हजार महिला राज मिस्त्री
आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना है झारखण्ड की इन महिलाओं ने दिखाया है कि नारी शक्ति स्वच्छ भारत अभियान की एक ऐसी शक्ति है जो सामान्य जीवन में स्वच्छता के अभियान को स्वच्छता के संस्कार को प्रभावी ढंग से जनसामान्य के स्वभाव में परिवर्तित करके रहेगी
भाइयोबहनो अभी दो दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था कि एलीफेंटा द्वीप के तीन गाँवों में आज़ादी के 70 वर्ष बाद बिजली पहुँची है और इसे लेकर वहाँ के लोगों में कितना हर्ष और उत्साह है
आप सब भलीभाँति जानते हैं एलीफेंटा द्वीप मुंबई से समुद्र में दस किलोमीटर दूर है
यह पर्यटन का एक बहुत बड़ा और आकर्षक केंद्र है
एलीफेंटा की गुफाएँ यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज हैं
वहाँ हर दिन देशविदेश से बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं
एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन है
मुझे यह बात जानकर हैरानी हुई कि मुम्बई के पास होने और पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद आज़ादी के इतने वर्षों तक एलीफेंटा में बिजली नहीं पहुँची हुई
70 वर्षों तक एलीफेंटा द्वीप के तीन गाँव राजबंदर मोरबंदर और सेंतबंदर वहाँ के लोगों की ज़िन्दगी में जो अँधेरा छाया था अब जाकर वह अँधेरा छँटा है और उनका जीवन रोशन हुआ है
मैं वहाँ के प्रशासन और जनता को बधाई देता हूँ
मुझे ख़ुशी है कि अब एलीफेंटा के गाँव और एलीफेंटा की गुफाएँ बिजली से रोशन होंगे
ये सिर्फ़ बिजली नहीं लेकिन विकास के दौर की एक नयी शुरुआत है
देशवासियो का जीवन रोशन हो उनके जीवन में खुशियाँ आएँ इससे बढकर संतोष और ख़ुशी का पल क्या हो सकता है
मेरे प्यारे भाइयोबहनो अभीअभी हम लोगों ने शिवरात्रि का महोत्सव मनाया
अब मार्च का महीना लहलहाते फसलों से सजे खेत अठखेलियाँ करती गेंहूँ की सुनहरी बालियाँ और मन को पुलकित करने वाली आम के मंजर की शोभा यही तो इस महीने की विशेषता है
लेकिन यह महीना होली के त्योहार के लिए भी हम सभी का अत्यंत प्रिय है
दो मार्च को पूरा देश होली का उत्सव हर्षोल्लास से मनाएगा
होली में जितना महत्व रंगों का है उतना ही महत्व होलिका दहन का भी है क्योंकि यह दिन बुराइयों को अग्नि में जलाकर नष्ट करने का दिन है
होली सारे मनमुटाव भूल कर एक साथ मिल बैठने एकदूसरे के सुखआनंद में सहभागी बनने का शुभ अवसर है और प्रेम एकता तथा भाईचारे का सन्देश देता है
आप सभी देशवासियों को होली के रंगोत्सव की बहुतबहुत शुभकामनाएँ रंग भरी शुभकामनाएँ
यह पर्व हमारे देशवासियों के जीवन में रंगबिरंगी खुशियों से भरा हुआ रहे यही शुभकामना
मेरे प्यारे देशवासियो बहुतबहुत धन्यवाद नमस्कार